सामने एक चर्च है और यह चर्च बहोत बड़ी है।

दूसरी भाषा में लिखा हुआ है और नीचे फ्रा--

के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है और इसे पैकिंग करवाया हुआ है इस पैकिंग का कलर पिंक --

और कई सारे ल जेंट्स भी लाइन में खड़े हुए--

और सामने एक व्यक्ति खड़ा हु--

जिसके ब्लू कलर की टी शर्ट और ग्रीन कलर की पैंट डाली हुई हैं।

दो साइकिल और खड़ी हुई हैं। पीछे बहुत सारे परदे लगे हुए हैं। इन पदों का कलर पिंक और व्हाइट है।

और शॉप के सारे शटर बंद पड़े हैं।

सामने तीन टीचर्स भी खड़े हैं इन तीनों टीचर्स ने साड़ी पहनी हुई है।

काउंटर के बीच में भी बहुत सारे खाने पीने वाला सामान पड़ा हुआ है।

यहां बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं और यह एक प्ले ग्राउंड --

और कुछ लड़कियां खेल रही हैं और कुछ बैठी हुई हैं।

सामने एक बड़ा सारा स्विमिंग पूल है जिसमें बहोत सारा पानी है।

और इसी शॉप के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

जहां बहोत सारी पतंग अलग अलग कलर की पड़ी हुई है सामने एक वाइट और रेड कलर की पतंग पड़ी है और--

सामने एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है।

दो थालियां पड़ी हुई हैं और इन थालियों में राइस और चिकन है।

कहीं टहल रहे हैं और कई लोग खड़े हैं।